के अंदर लाइटें बहुत सारी जल रही हैं और बाहर बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर हमें दिख रहा है एक बड़ा सा--

और एक कुड़ादन रखा हुआ है जिसमें बहुत सारी पर्ची पड़ी हुई हैं।

दिख रहा है दरवाजा जिस पे ताला लगा हुआ है।

यहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहा है कुछ और--

और लाइटें बहुत सारी जल रही हैं।

बहुत से लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हुए हैं।

हमें यहाँ पर दिख रहा है एक बड़ी सी बस।

और एक बस और खड़ी हुई है एक व्यक्ति और खड़ा हुआ है।

और इधर बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा जिसपें लिखा है पॉपुलर --

और खिड़कियां बनी हुई एक साइड में शटर लगा हुआ है।

हमें यहां पर दिख रहा है एक बड़ा सा ढाबा--

और ढाबे के ऊपर हुआ है वैष्णो ढाबा।

और जहाँ पर बहुत सारे डीजे साउंड रखे हुए हैं।

और डीजे के अंदर मकान के अंदर--

हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दुकान है।

और एक बड़ा सा मकान बना हुआ है इस पर लिखा है इस्तेमाल।

पानी की टंकी रखी हुई है एक व्यक्ति वहीं पर खड़ा हुआ है।

और दीवाल पर बहुत सारी सजावटें की गई हैं।

टेबल पर प्लेटें रखी हुई हैं टिशू पेपर रखा हुआ है।

हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग ।

बिल्डिंग के पीछे केला का पेड़ लगा हुआ है और चारों तरफ से बाउंड्री है।

दुकान है जहाँ पर केवल टमाटर--

पल्ली तनी हुई ऊपर से और लाइट लही हुई एक मीटर लगा हुआ है।

यहाँ पर एक बेंच रखा हुआ है।

और इसमें बहुत सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं।

यहां पर काले अंगूर और हरे अंगूर--

यहाँ पर कुछ डिब्बे रखे हुए हैं प्लास्टिक के।

यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और कुछ फोटो बने हुए हैं।

बॉडी बनाने वाला कुछ समान भी रखा हुआ है।

और बाहर से लाइट आ रही है ये हमें दिख रहा है।

पेड़ दिख रहे हैं पत्थर दिख रहे हैं।

जहाँ पर छोटे पेड़ लगे हुए हैं और घास लगी हुई है।

और छत के ऊपर एक लाइट का खंबा लगा हुआ है।

हमें यहां पर दिख रहा है एक बड़ा सा हॉल जहां पर सामान रखा हुआ है।

हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है और एक साइकिल एक स्टूल --

हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह एक आसमान है।

यहाँ पर हमें दिख रहा है एक मकान।

यहाँ पर हमें दिख रहा है एक बड़ा सा बोर्ड।

हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यह एक फील्ड है जहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं।